पेट्रोल पंप है वहां पे --

पाठशाला ही होगी चूंकि स्टूडेंट लोग भी जा रहे है और स्टूडेंट्स के --

यहां पे एक बच्चे यहां पे बाल --

दो कुर्सी सामने में लगे हुए हैं उसके पीछे एक जो है जिसपे मुख आदमी बैठेंगे व वो उधर भी --

यहाँ पे दो आदमी बेच रहे है ।

क्लास रूम कैसे बता सकते है।